इस चित्र में बहोत बड़ा सा मार्केट लगा हुआ है रोड के पास जो किनारे किनारे में बहोत सारे छोटे छोटे दुकान लगाए हैं।

छोटे आम का पेड़ भी लगा हुआ है जिसमें आम भी फले हुए दिख रहे हैं।

में मिट्टी लगी हुई है।

बिजली का खंबा दिखाई दे रही है।

आआर एक टीचर दिखाई दे रही है जो खड़े होके इन लोगों को देख रही है।

ए बिजली का खंभा दिखाई दे रहा है।

ये चित्र में एक आइसक्रीम की फ्रीजर है जिसमें बहोत सारे केक आइसक्रीम रखे गए अंदर में --

और बड़ी सी पेड़ दिखाई दे रही है।

इस चित्र में एक बहुत बड़ा सा घर है घर के बाहर एक बगीचा बना है।

और एक पेड़ भी लगा हुआ है बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है।

बीच में डिवाइडर में छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं और उस तरफ बहोत बड़ी सी पेड़ दिखाई दे रहीं हैं और--

इस चित्र में एक बहोत बड़ा सा--

और उस तरफ किचन का रूम है जिसमें चीप लोग खाना बना रहे हैं।

गड्ढा खोदे गये है नांगल जोते गये है।